और लाइटनिंग की चीजे भी मिलती है।

केक बन जाएगा। हो सकता है कि यह कोई मंदिर हो या और भी कोई चीज हो सकती है।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

तो यहां कई सारी दुकानें एक साथ नजर आ रही हैं जैसे कि समर कलेक्शन ।